और पेड़ों में मुझे बर्फ की जो चादर दिख रही है शाखाओं के और पत्तों पे जो है।

म्यूजिक का हर एक यंत्र यहां पर बेचने के लिए रखे गए हैं।

होलीडेज होम यहां पर है एक होटल है ये।

यहां पर हर प्रकार की चीजें मिलती हैं ग्रोसरीज का समान मिलता है किचेन का भी सामान मिल जाता है।